तेल और डीजल दोनों मिलता है उसमें बस और गाड़ियां भी खड़ी हुई है कुछ लोग को चेयर डाले बैठे हुए हुए हैं।

जो कि तीन मंदिर दिखाई दे रहे हैं एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

यह पोस्ट ऑफिस है यहां पे डाक वाला काम होता है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस जो पुराना लग रहा है यहां पे कैबिन बना हुआ है।

ये बस अड्डा है यहां पर साधन मिलते हैं यहां पर सबको सवारियां मिलती हैं एक जगह लिखा हुआ है --